और एक खंभा बना हुआ है पीछे वाइट बोर्ड लगा हुआ है।

और आसपास यहां पे टेबल हैं दो चार बच्चे यहां पे खड़े हैं व्हाइट कलर की टेबल है सामने जाल बना हुआ है और ये एक रेलवे स्टेशन है।

ब्लैक कलर के टेबल है। ब्लैक चेयर्स है। शीशा लगा हुआ है।

सामने व्हाईट बिल्डिंग हैं बहोत सारी खिड़कियाॅं हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं बड़े पेड़ हैं।

एक रोड है ग्रे कलर का फर्श है लोहे का दरवाजा लगा ब्राउन कलर का सामने बोड है।

और यहां पे एक दुकान है बहुत सारे लोग यहां पे समान खरीद रहे हें।

सामने एक वाइट कलर बिल्डिंग है एक पोस्टर लगा हुआ है जे_के हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

लोग यहां पे मस्ती करने आए हैं और वीडियो बना रहे हैं।

सामने ऑरेंज कलर का घर है लोहे की जाली बनी हुई है।